यहाँ मातारानी की फोटो हैं।

यहाँ पे और भी मकान बने हुए हैं जो रंग-बिरंगे दिखाई दे रहे हैं।